यहाँ मुझे कारे रखी हुई दिखाई दे रही हैं सफ़ेद बादल भी दिखाई दे रहे हैं एक हरा पो-पेड़ भी नज़र आ रहा हैं।

यहाँ मुझे बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है छोटी - छोटी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है और छोटे - छोटे पोधे दिखाई दे रहे है।

खेत में लकड़ियाँ लगी हुई है बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है बहुत सुंदर नजर देखाई दे रहा--

बैंक के बाहर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा हैं बैंक के बाहर कुछ तार भी नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर मुझे हरी-हरी दूबा दिखाई दे रही है तालाब दिखाई दे रहा हैं ।

और एक बिल्डिंग बंद हैं और बाकि बिल्डिंगे खुली हुई हैं एक साइकिल भी रखी हुई हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।